और यहां पे बहोत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है उसको।

यहां पे अ तीन बच्चे हैं वो स्टेज पे खड़े हैं।

और पीछे ब्लैक कलर का पर्दा लगा हुआ है।

ये एक शॉप है और बार बार वहां पे जो है--

और उसके नीचे ही दो गाड़ियां खड़ी हैं और उसके पीछे चार गाड़ियां और खड़ी हैं वहां एक अंकल खड़े हैं।

का जूस हो गया सर्फ एक्सल हो गया चाय पत्ती हो गया--

ये एक बगीचा है रात का टाइम है और बगीचा है यहां पे और बगीचे के साथ में ही छोटे-छोटे जो है छोटे-छोटे जो है गमले रखे हुए है।

और छत के ऊपर बहोत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए उसके साथ ही वहां पे जो है।

बहोत अलग अलग बाइक खड़ी हैं और अलग अलग कलर उन उन बाईक्स का।

न्यू ब्रा न्यू ब्रांड बाइक्स आई है ये और यहां पे जो है।

दोनों जो है आपस में बात कर रहें हैं फोटो भी क्लिक करवा रहे हैं।

बहोत सारे बलूंस की डेकोरेशन की हुई है।

ये जो एक मोहल्ले की गली हैं और उस गली में एक शॉप बनी हुई है पीछे बहोत सारे घर है उस गली में --